रोड के ऊपर एक बाइक है।

उधर भी बहोत भीड़ है एक ऑटो दिख रहा है।

वो तो ये शावर लगाया गया हैं।

और उसमे अ तीन शॉवर है और उसमे लाइट्स है।

और नीचे स्टोन है छोटे-बड़े बोहत सारे स्टोन भी है।

फिर भी रिवर के लिए मतलब--

इधर भी गुलाबो के झाड़ो के पौधे है शायद--

पुलिट ऐसा लिखा हुआ है एक पुलिस मेन है।

एक बीच में बड़ा सा पेड़ है उसके आजु-बाजू में गैप्स छुटी हुई है।

ये एक चर्च है शायद क्रिसमस डे होंगा शायद इसीलिए इतना सारा डेकोरेशन किया हुआ हैं।

बहुत सारे बलून है और सामने--

और दो लोग एक बच्चे को लेकर आ रहे है एक के हाथ में हेलमेट है।

इधर से छोटा सा रास्ता भी दिख रहा है।

लक्ष्य इंटरनॅशनल अकादमी और स्कूल भी क्लि --

बहुत सारे फिशेस है अलग अलग पार्ट्स में ऐसे चार बंच करे हुए है |--

वो और ऐ.टी.एम है। एक लड़का ऐ.टी.एम की फोटो खींच रहा है। इधर से शायद बैंक बैंक होगी।

निचे एक जैसा घर जैसा कुछ तो अभी दिख रहा है इधर भी वाइट कलर का घर है लोग दिख रहे है बड़ा-सा ग्राउंड है एक इंसान--

फिश है उधर से बड़की रिवर दिख रही हैं।

ये शायद एक औ रूम क्लास रूम है नेक्स्ट बैंच दिख रही हैं बैग भी दिख रही है।

और एक फिश को अम्म हिला रही है।

ये ब्यूटीफुल नेचर है माउंटेन दिख रहे है |

और मतलब ऐसे कुछ वेल जैसा रहता है न वैसा दिख रहा हैं।

ये एक जिम है येलो कलर का बॉक्स है उस पे ब्लैक बेड्स है एक टायर्स है उस पे भी वैसा इच है।

वेलकम लिखा हुआ है ऐसे बेल जैसा भी कुछ तो फ्लावर से बनाया हुआ है।

कलर्स हेयर्स स्टाइल नाम की एक शॉप है उस --

ए फैक्ट्री है बड़ी-बड़ी मशीन्स है लोखंत बनी हुई है उधर टिन की--